आकाश भी दिखाई दे रहा है।

ये इस दृश्य में एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है त--

बड़े बड़े कारखाना दिख रहे है।

अनेक कलर के मोटे मोटे पाइप भी बिछे हुए दिख रहे है।

तथा पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

सड़क में पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहा है।

चार पहिए वाली वाहन भी दिखाई दे रही है तथा व्यक्ति भी मौजूद दिख रहे हैं।

भगवान का तस्वीर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे वस्तुएं दिखाई दे रही है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है।

तथा एल्वेस्टर भी दिखाई दे रहा है एवं कुर्सी भी बैठने वाली दिखाई दे रही--

ये इस दृश्य में एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।

तथा बहुत सारे पेड़ पौधे एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस दृश्य में एक मस्जिद का गली दिखाई दे रहा है।

चार पहिए का वाहन भी दिखाई दे रहा है ।

एवं विद्युस का खंभा तथा केबल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस दृश्य में एक गार्डन दिख रहा है।

तभी दृश्य जलता हुआ बल्ब जनरेटर दिखाई दे रहा है ।

तथा एक व्यक्ति भी मौजूद दिख रहा है।

लगता है भगवान का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस दृश्य में एक रूम दिखाई दे रहा है।

तथा एक विद्युत सा जलता हुआ बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

एवं घड़ी भी दिखाई दे रहा है तथा शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।